इसमें जो है सोफे वगैरह रखे हुए हैं मेनू लगा हुआ है दीवारों पे पंखा लगा हुआ है।

ये टोल का व्यू दिखाई दे रहा है।

यह किसी कैफे की तस्वीर दिखाई दे रही है।